यहाँ चार लड़कियां खड़ी हैं जिनने अपनी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है और नीले कलर की बॉर्डर है। पीछे की ओर इसा मसीह की फोटो दिखाई दे रही --

इसपे लिखा है गजा निकट बारात घर।

और पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां एक टावर दिखाई दे रहा है और मकान दिख रहा है जो कि नीले और गुलाबी रंग का है।

और चढ़ाव दिख रही है यहां पर एक बाइक भी खड़ी हुई है।